एक आदमी है लाल कलर की शर्ट पहने हुआ है सफेद पैंट पहने है ब्लैक जैकेट पहने हुए है कुर्सी पर बैठा है।

दोनों व्यक्ति आपस मे कुछ बात कर रहे हैं टी शर्ट वाला व्यक्ति अंदर की ओर जा रहा है।

एक आदमी जा रहा है एक औरत सर पर लाल कलर का दुपट्टा डाले है एक व्यक्ति का पोस्टर लगा है एक बड़ी सी बिल्डिंग है।